पानी में छोटे छोटे पौधे घास इत्यादि दिख रहे हैं।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

सीढ़ियां दिख रही है और मुझे इस चित्र में दो कुर्सियां दिख रही है।

दीवाल घड़ियां दिख रही हैं जो बहोत ही सुंदर-सुंदर है।

दो सायकल दिख रही है और एक चौड़ा रास्ता दिख रहा है जिसपे लोग जा रहे हैं।

इस चित्र में मुझे एक रूम दिख रहा है जो नीला और लाल रंग से पेंट किया हुआ है इस चित्र में--

और उसके बाहर एक एम्बुलेंस भी खड़ी है।

जिससे बॉल लटका हुआ है एक टेबल दिख रही है।

पेड़ दिख रहा है और कई सारे लोग दिख रहे हैं बोरी दिख रहे हैं।